काउंटर के अंदर एक आदमी खड़ा दिख रहा है।

यह एक मैंस पार्लर दिखाई दे रहा हैं।

ऊपर पंखे लगे हुए हैं लाइटें जग रही है।

यहाँ आदमी के उपर कुछ नीला टॉवल जैसे डाला दिखाई दे रहा है।

यहां पे काले कलर के कुछ सिस्टम भी दिखाई दे रही हैं।

कुछ लाइटें जग रही हैं आजु बाजु पूरा काले कलर के स्पीकर लगे हुए दिख रहे हैं।

यहां पे सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है।

पीछे दो हाथी के दांत जैसे कुछ बनाया दिख रहा है।

एक छोटा सा बच्चा उधर बैठा दिखाई दे रहा हैं एक आदमी इधर खड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां बेकरी के बाहर एक काउंटर लगाया हुआ है।

पीछे एक भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है।

यह एक मछली की दुकान है।

यहां पे एक नारंगी कलर की ट्रे और नारंगी कलर की पुट्टियां भी दिखाई दे रही है जिसमें मछलियां है।

यहां पे बाजू में एक नदी बहती हुई दिख रही हैं।

यहां पे एक नीला कलर का खुला आसमान दिख रहा है।

पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा दिखाई दे रहा है।

यह फंक्शन हॉल पूरे फूलों से सजाया हुआ दिख रहा है।

छे एक अधुला दिख रहा--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

बाहर जो बहोत सारी गाड़िया पार्क की हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पे आदमी एक हरा कलर का शर्ट पहने दिखाई दे रहा है।

यह एक पंडाल जैसे दिख रहा है यहां पे कुछ पूजा अर्चन हो रही है।

बहोत सारे लोग आए हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पे मां दुर्गा की तस्वीर दिखाई दे रही हैं एक पुजारी उधर खड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां एक कार्यालय दिख रहा है।

पीछे एक बिरु दिख रहा है।

यहां पे कुर्सियां भी लगाई हुई हैं।

वहाँ पर एक टेबल भी दिखाई दे रहे हैं दीवार के ऊपर दो स्पीकर लगाए हुए दिख रहे हैं।

यह दुकान के अंदर दो ए_सी लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे दो लाइट के खंभे भी दिखाई दे रहे है।

दिख रहा है यहां पर तो आदमी कुछ तस्वीर लेते हुए दिख रहे हैं नीचे कुछ डंबल रखा दिख रहा है।

यहां बगल में बहुत सारे आदमी इधर शूट केश लिए हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं।

यहां एक दुकान दिखाई दे रही है।

पीछे एक कराज रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे सफेद और काली कलर की कुर्सियां दिख रही हैं।

यहां पे एक औरत और एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है।